यहां पे एक टेबल दिख रहा है।

यह पहाड़ी इलाका दिख रहा है यहां पे बहोत सारे जंगल से दिख रहे पेड़ पौधे।

यहां पे बहोत ही सुंदर नजारा दिख रहा है ये फोटो हिचवाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है यहां पे बहुत सारे जड़ी बूटियां भी मिलती होंगी।

ऐसी मूर्तियां राजस्थान में ज्यादातर बनती है।

बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं यहां पे बिजली के पोल भी दिख रहे हैं यह एक बगल में एक कपड़े की बहुत बड़ा दुकान दिख रहा है।

यहां पे सिलिंग में भी बहोत सारे बल्ब लगाया गया है जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं।

य अहाँ एक दीवाल दिख रहा है दीवाल के ऊपर चार निकाले गए है बीम के लिए दीवाल के उस पार एक --